एक दुकान है दुकान के पास तीन आदमी खड़े हैं।

एक बड़ा सा दुकान है दुकान के बाहर

झालर लगा हुआ है ढेर सारा हर कलर का फूल लगा हुआ है।

ये एक घर है घर के बाद घर के पास दो आदमी खड़े है एक लेडिज खड़ी है।

अ कार्टून है कार्टून क अंदर पैक कर रहा है आ आदमी--

एक म एक ये मस्जिद है मस्जिद में बहुत सारे उम्म--

बहोत सी घर दिख रहा है बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं जो घर--

उम्म कि यह एक नदी हैं नदी के पास एक नाव हैं नाव अम नाव के ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं।

वह एक आदमी है दो आदमी है एक आदमी सो अ।